और बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है एक कुल्फी का ठेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक छोटी बच्ची खाती हुई दिखाई दे रही है।

और लड्डू रखे हुए दिखाई दे रहे है कुरकुरे की पैकेट टंगी हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ मिठाईयो की कुकर रखी हुई दिखाई दे रहे है ।

इस इमेज मे मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है और बहुत सारे नीचे आदमी दिखाई दे रहे है यहाँ कुछ साइकिले --